यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के पड़ोस एक लोहे का गेट लगा है गेट के आगे एक बोर्ड लगा है रेड कलर --

यह एक मंदिर है। मंदिर के आगे एक एक वो छावनी बनी हुई है।

एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के पास एक पार्क है। पार्क के पास एक रोड़ गई है। रोड के पास एक बोलेरो है जो इस व्हाइट कलर की है।

यह एक दुकान है। दुकान के अंदर दवाई वाले कुछ डिब्बे रके हुए हैं।

और उसके आगे एक मेज पड़ी हुई है। उसके ऊपर दो बाल्टी एक डब्बा रखा हुआ है।

और एक एक खम्बा लगा हुआ है। उसके पास दीवाल एक मेज पड़ी हुई है। जिस पे सफ़ेद चादर पड़ी --

यह एक मंदिर है जोकि व्हाइट कलर का है। मंदिर के विंडो एक रेड कलर की है बाकि व्हाइट कलर के एक तरफ विंडो --

है ये एक केंदीय विद्यालय है जोकि पीले रंग का पुता हुआ है और एक लोहे का गेट लगा हुआ है।

झूले में कुछ नीले कलर की एक डांडियाँ लगी हुई हैं और कुछ रेड कलर का है और झूले में बैठने की सीट ऑरेंज कलर की है।